इस इमेज मे बहुत पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क कुछ चीज़े बनी हुई दिखाई दे रही है | यहाँ पर आसमान भी दिखाई दे रहा हैं |

काफी सामान पैकेटों के अंदर पैक है। काफी सामान डिब्बों के अंदर पैक है। काफी सामान प्लास्टिक के डिब्बों में रखा है। काफी यहाँ पर शीशियां रखी हैं।

यहाँ पर एक पीसी चल रहा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शत पर लाइट से जगती हुई नज़र आ रही हैं। शत पर पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।